और छोटी छोटी सीढ़ियां है एन्ड एक लड़का है जो वह मॉन्यूमेंट्स देखने आया है।

मंदिर का जो कलर है वो ऑरेंज कलर का है।

जहां पे बच्चे बुक्स पढ़ते हैं।

और सारे लोग में एंजॉय करते हुए दिखते हैं।

अंदर में दिखाई दे रहा है।